यहाँ काफी खूबसूरत और यहाँ पर नीचे हरे रंग की पेंट की गई है जो की दरी जैसी बिछाई है जो की दिखने में बहुत मस्त --